सामने एक वाइट कलर का --

और यहां के अंदर का दृश्य नजर आ रहा है यहां पर बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसे यहाँ लग रहा है की यहां पर बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा जान पड़ रहा है कि यहां पर एक मॉल है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसे लग रहा है की यहाँ कोई यहा पर योगा का क्लास हो रहा है।

के अंदर का दृश्य लग रहा है यहां पर --

और यहां पर नजदीक में एक नाव दिख रहा है उस पर तीन लोग सवार हैं।

और यहां पर आसपास बहुत सारे पीढ़े नजर आ रहे हैं बहुत लंबे-लंबे हरे भरे।

नदी में बहुत सारे स्टीमर हैं बहुत सारी लाइट चल रही हैं।

और लाइट चल रही है अच्छा लग रहा है यहां का नजारा।

यहां पे बहुत सारी लाइट जली हुई है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है।

बहुत हरे भड़े पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

और सामने बहुत हि अछे तरिके से सजाया गया है जहा पर वेलकम लीख --

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है।

ऐसा लग रहा है कि यहां पे कुछ काम चल रहा है।

लग रहा है कि यह बिल्डिंग के बाहर का दृश्य है यहां पर --

और सामने यहां पर लाल कलर का चेयर भी रखा हुआ है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है कि यह कोई --

और बाहर कांच का दृश्य नजर आ रहा है।

कौन सा कलर दिखाई दे रहा है।

स्कूल दिख रहा है यहां पर बोर्ड लगा हुआ है।

नदी है और यहां पर सामने --

पंखे जैसा कुछ दिख रहा है लोहे का।

जो कि एक आदमी का बाल बना रहा है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा जान पड़ता है कि यह कोई स्कूल है यहां पर --

टेबल के आसपास चेयर लगा हुआ है जिस पर लोग बैठे हुए हैं।

एक दुकान जैसे दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे बलून लगे हुए है अंदर एक आदमी दिख रहा --

और देखने में यहां सामने बहुत सारे गुलाब के फूल।

नजर आ रहे हैं और बहुत ही फ्रेश लग रहा है देखने में --

और यहां पर किनारे पर बहुत सारे छोटे-छोटे पीड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से यहां लग रहा है कि यहां पर सामने कोई बुक स्टोर है।

यहां सामने बहुत लोग नजर आ रहे हैं और --

सामने देखने से ऐसा लग रहा है की बहुत सारे एरोप्लेन यहाँ पर रखे गए है।